वह एक दूकान है जहा दूध का बना आइटम --

यह श्री श्याम ट्रेडर्स टायर व्हील और ट्रमें की दुकान है।

बगल में घर बन रहा है एक आदमी--

- कुछ मेडिकल वगेरा की भी दवा रखी हुई है वाकी क्रीम बगेरा ह--

यह एक वेअर हाउस जैसा लग रहा है यहां पे एक मशीन लगी हुई है और --

छोटे छोटे पेड़ भी है पहाड़ के जैसे और ऊपर से बहुत बड़ी तार निकली हुयी है।

यह एक सब्जी और फ्रूट की शॉप है यहां पे--

यह एक कंपनी है जहां पे वर्कर अपना वर्क --

एक फैन लगा हुआ है और एक झूमड़ भी।

यह गणेश जी की मूर्ति है यहां पे--

और कोई कंपनी भी दिखाई दे रही है और बहोत सारी कार भी यहां पे खड़ी हुई है।

लोन फ़ोन पे में ही होता हैं एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं सैमसंग के मोबाइल भी मिलते हैं।

चस्मा वाली जिसमे चस्मे बहोत सारे चस्मे दिख रहे है।

इसमें लोगो को बैठ ने के लिए भी व्यवस्ता की गयी है।

पत्थर पीसा जा रहा हैं और एक ट्रोली भी खड़ी हुई है और मशीन भी चल रही हैं।

यह एक फुट की सोप है।

यहां पे बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं एप्पल ऑरेंज ग्र--

और एक जैसा पंडाल बना हुआ है।

और एक बोर्ड है कंप्यूटर है एक साउंड भी रखा हुआ है।

यह एक और दिखाई दे रही है यहां मंदिर की सीन है कुछ जानवर भी दिखाई दे रहे हैं गाय बछड़ा।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पर्वत भी दिखाई दे रहा है मंदिर है।

यह एक पर्वत है पहाड़ है यहाँ पे एक पेड़ सुखा गिरा हुआ है।